ये एक गोशाला लग रहा है देखे जहां पे एक गाय के साथ उसके कई सारे बछड़े और साथ ही साथ पीछे एक --

पानी की धारा बहुत तेज है लेकिन पानी का--

ये एक डियर पार्क है जहां पर बहोत सारे खूबसूरत से डियर है और वो पत्तों को खा रहे हैं।

और एक खिड़की से काफी अच्छा सनलाइट भी आ रहा है।

और बहोत सारे रॉ मैटेरियल्स वहां पे रखे हुए है।

मसल्स गेनर या सप्लीमेंट्स की दुकान है जहां पे बहोत सारे बॉडीबिल्डिंग के सप्लीमेंट्स मौजूद है।

बहोत ही सुंदर क्लॉक टावर या एक स्टैचू भी मौजूद है।

किसी एक पथरीले पहाड़ से नीचे आ रहे हैं जहां पे पानी का--

ये एक खूबसूरत सा नया बना हुआ बिल्डिंग है जहां पर ऊपर--

बगल में कुछ और दुकानें भी मौजूद हैं।

एक खूबसूरत सा तालाब और एक खूबसूरत सी जगह है जहां पे बहुत से लोग अपने प्रियजनों के साथ--

बहुत सारे लोहे के छोटे छोटे उपकरण--